और स्टेज को अच्छे से पर्दों से और फूलों से सजाया गया है।

और कुछ लोग का गार्डन में जमीन पर बैठे हुए हैं।

सामने पिक्चर ए एक रैंक बनी हुई है लकड़ी से और उसमें कांच की सेल्फी लगी हुई है और उसमें कांच की गिलास है कांच की बॉटले --

सामने पिक्चर मे ह हरे भरे पेड़ पौधे दिख रहे है उसके सामने ही--

शॉप दिखाई दे रही है बर्गर क्लब और एक पास में आइसक्रीम --

फार्मर आइस्क्रिम पार्लर बना हुआ दिख रहा है।

सामने पिक्चर में एक लाल कलर की बिल्डिंग बनाई दिखाई दे रही है और उसके ऊपर--

कृषि विज्ञान केंद्र छछर लिका हुआ है।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

सामने पिक्चर में एक बड़ा सा हॉल दिख रहा है और हॉल को अलग करें उसे पार्टीशन किया हुआ --

अ किनारे पे हरे बोहोत सारी झाड़ियां है पेड़ लगे हुए--

सामने एक आदमी खड़ा है जिसने सफेद कलर की पेंट औ--

सामने पिक्चर में एक बहुत बड़ा सा संबंध दिख रहा है और उसमें सात आठ--

अलग अलग कलर की है हरी सफेद और--

बहुत सारी छोटी छोटी घंटियां लगी हुई है और मंदिर के ऊपर--

गुलाबी और बादली पीले कलर के--

सामने पिक्चर में बिल्डिंग दिख रही है और बिल्डिंग में पंजाब नेशनल बैंक है।

सामने पिक्चर में एक दुकान दिख रही है जिसका नाम है नीलकंठ कार एस--

दुकान है और दुकान का गेट आधा खुला है और दुकान--

सामने पिक्चर में एक बस दिखाई दे रही है और बस में एक आदमी चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा--

उसके बाहर काच के अ दरवाजे लगे हुए--

अं चारों तरफ अ कुछ कुछ दूरी पर आदमी खड़े--

सामने पिक्चर में एक सड़क है और सड़क पे अ एक कार है।

और दूसरी साइड में एक दीवार है और फुटपाथ पे एक आदमी चलता हुआ दिख रहा है।

पीछे महिला कॉलेज है और कॉलेज के बाहर ही एक साइड सफेद कलर की कार खड़ी है और दूसरी साइड एक ग्रे कलर की वेन खड़ी है।

और हॉल में लंबी लंबी टेबले है तीन चार--

सामने पिक्चर में एक स्कूल है जिसका नाम है टी_आर_के पब्लिक स्कूल दो मंजिल की स्कूल है स्कूल के बाहर एक गेट है।

ये बहुत सारी किताबें पढ़ी है काउंटर पर एक आदमी अ बैठा है और काउंटर के बाहार--

और कुछ टी-शर्ट समेट के रखे हुए हैं सफेद लाल और पीले कलर के--